एडमिशन लेने से पहले एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जिसमें पास होने के बाद ही इसमें आपका एडमिशन होता है।

ये फल काफी अच्छे हैं और काफी अच्छे से इन्हें रखा गया है।

यह एक झरना है। जहाँ पर ऊपर से पहाड़ियों से होते हुए पानी नीचे खाई में गिर रही है।

ऐसे कहा जाता हैकि जब ये अपना पंख फैलाकर नृत्य करते हैनृत्य करते हैं तो ये नजारा बहुत अद्भुत होता है|